कुछ पड़ियों की टहनी सुखी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे ग्रीन कलर की एक दरी बिछी हुई है।

इस पिक्चर में मुझे एक गुंबद बनी हुई दिखाई दे रही है।

अंदर रेड कलर का पर्दे टंगे हुए हैं।